यहां कुछ क्रेन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक डब्बा भी नजर आ रहा है।

लाल रंग का गेट भी नजर आ रहा है।

एक सीढ़ी भी नजर आ रही है।

यह दो व्यक्ति का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

कांच की खिड़कियां भी नजर आ रही है।

पर कुछ सफेद रंग की लाइटें भी लगी हुई है।

एवं छत पर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

एवं एक टी_वी भी नजर आ रहा है।

कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

था एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यह एक काउंटर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

एक सफेद रंग का डिब्बा भी नजर आ रहा है।

यह एक मिलिट्री टैंक का दृश्य दिखाइए दे रहा है।

इसके चारों और तारे लगी हुई है।

और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यह एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है जिसके हाथ में झाड़ू है।

सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

तथा लकड़ी की मदद से बनी हुई रैक भी नजर आ रही है।